और सामने पर एक येलो कलर की टंकी गिरी हुई है।

दो इंसान है एक बाहर और एक अंदर।

रेस्टोरेंट की डीवाल रेड कलर की है और इस दीवार पर ओल्ड टाऊन भी लिखी हुई है।

यहां पर आसमान पूरे बादल से छाई हुई है।

इस तस्वीर पर मुझे एक क्रिस्टियन चर्च दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर पर मुझे एक ए_टी_एम दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर पर मुझे बहुत सारे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर पर मुझे सफेद कलर की घर दिखाई दे रही है जिसकी छत ब्लू कलर की है।

इस तस्वीर पर मुझे एक नदी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर पर मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है।

सामने पर बहुत सारे दुकान दिखाई दे रही है। बारिश दे रही है।

एक बुड्ढा इंसान ब्लू कलर की कपड़े पहन कर खड़े हैं।

मुझे नीले कलर के आसमान दिखाई दे रही है और ग्रीन ग्रीन गछियाँ दिखाई दे रही है।

इसकी छत टीना की है ब्लू कलर की और उसके सामने में टंकी है ब्लू कलर की टंकी।

यह तस्वीर एक अंधेरा समय की तस्वीर है और यहां पर मुझे ग्रीन ग्रास भी दिखाई दे रही है।

की कलर सीमेंट कलर की है।

इस तस्वीर पर मुझे एक आदमी हिंदू भगवान के दर्शन करते हुए दिखाई दे रही है।

यह ब्रिज पर ब्लू कलर की रस्सी भी बांधी हुई है।